यहाँ पर बहुत सारे बैंगन रखे हुए हैं।

यहाँ पर एक ट्रेक्टर खड़ा हुआ है जिसे किसान खेतों में बखरने --

जोकि खड़ा हुआ है और कहीं देख --